इसमें बहुत सारा सामान भी देखने को मिल रहा है।

इस फोटो में बहुत बड़ा बिल्डिंग देखने को मिल रहा है।

पहाड़ की भी दिखने को मिल रहा है।

प्लास्टिक भी देखने को मिल रहा है।

बहोत सारा पेड़ भी देखने को मिल रहा है।

टी भी देखने को मिल रहा है।

पाल भी देखने को मिल रहा है ब्लू कलर का।

फोटो मे घर का अंदर देखने को मिल रहा है।

दरवाजा भी देखने को मिल रहा है।

और नीचे में बहुत सारा मार्बल बिछा के भी दे--

मूछ भी देखने को मिल रहा है।

प्लास्टिक का पाइप भी देखने को मिल रहा है।

और पहाड़ भी देखने को मिल रहा है।

इंसान का पैर भी दिखने को मिल रहा हैं।

इस फोटो में बेंच डेखने को मिल रहा है।

इस फोटो में बड़ा सा घर देखने को मिल रहा है।

एक मोटर भी देखने को मिल रहा है।

सीढ़ियां भी दिखने को मिल रहा है।

कोटी पे दिखने को मिल रहा है।

उसमें बहुत सारा घर भी देखने को मिल रहा है।

इंसान लोग भी देखने को मिल रहा है।

इंसान बैठने वाला बेंच भी देखने को मिल रहा है।

मोटर भी देखने को मिल रहा है।

और एक गाड़ी का नंबर --

इस फोटो में बहोत बड़ा सा बिल्डिंग देखने को मिल रहा है।

इस फोटो में बरा सा घर देखने को मिल रहा है।

इंसान भी देखने को मिल रहा है।